जिसमे यहाँ पे हमे कुछ लोग अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे है।

मंदिर के काफ़ी डेकोरेशन की गयी है और इसके अलावा हमे और वहाँ पे पीछे जाली लगी हुई दिखाई गयी है जो की ब्लैक कलर की है और इस --

इस तस्वीर में हमे यहाँ पे एक बड़ा सा पक्षी दिखाया गया है और सुन्दर सा पक्षी है जिसकी चोंच येलो ऑरेंज कलर की है डिस्के पैरो के पास भी येलो कलर है।

और यहाँ पे छोटी-छोटी दुवाएं लगी हुई है।

इस तस्बीर में हमे यहाँ पे एक पैलेस दिखाया गया है।

इस रूम में उम्म ब्लैक कलर की चेयर्स लगी हुई है।

उसमे छोटी - छोटी धुआयें लगी हुई है मिट्टी पड़ीं हुई है।

उसके अलावा हमे कुछ पेड़-पौधे भी नज़र आ रहे है इस तस्वीर में।